यहां पे किसी प्रोग्राम को ऑर्गनाइज किया गया है।

और बहुत बड़ा बिल्डिंग हैं ।

और रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है और

और इधर काफी अच्छे तरीके से इसका --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

और कैंपस इधर से नजर आ रहा है काफी ब्यूटीफुल नजर आ रहा है।

और यहाँ पे छोटी सी बच्ची बैठी हुई है बिलकुल --

और बस के ऊपर मे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और चलने की कोशिश कर रहे हैं।

हैलो गाइस ये कोई मार्केट का फोटो है गाइस और यहां पे बहुत सारे --

जिम करते हुए नजर आ रहे है गाइज ।

मैपिंग कर रहे हैं लोग।

पीले कलर के सारी पहन करके अंदर से दिख रहा है गाइस --

और बस के ऊपर में बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं।

एक अच्छी-सी बिल्डिंग नजर आ रही हैं गईस उसके अंदर का फोटो है बिल्कुल |

यहां पर सोफा नजर आ रहा है गाइज ।